पत्थर बनाई गई हुई है लाल पत्तर से लाल किला का पत्थर है वो आसमान खुली हुई--

पत्तियां है और अंदर जाने के स्ट्री कुछ बोर्ड लगा कर है पिंक रंग का दीवाल है।